इस चित्र में हमें कई सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जिनका रंग हरा है।

पेंट की दुकान है जहां पर फेविकोल पेंट वगैरा मिलता है।

इस चित्र में हमें एक दरगाह नजर आ रही है।

कई सारे लोग नजर आ रहे है।

काफी सारे लोग नजर आ रहे है।

जिसका रंग लकड़ी का है सामने एक बड़ी सी खिड़की बनी है।

आदमी ने सफेद रंग की शर्ट पहनी हुई है।